औच यहां पर बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और बगल मे भी बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है।

यहां पे चाय इटली रखा हुआ है कुरकुरे बहुत सारे कुरकुरे एक बहोत बड़ा लाईट है।

कंप्यूटर हाउस है जहां पे सेल्स एन सर्विस होता--

और ऊपर में पंखा है। पंखा के बगल में बल्ब है।

ये एक पुराने जमाने का घर है। बाहर मे बहुत सारे गाड़ी लगे हुए हैं स्कूटी साइकिल कार

एक ठो बस का रंग लाल है बस के टॉप फ्लोर में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और नीचे भी चार व्यक्ति खड़े हैं।

ऊपर में फूलों की माला के सजावट किया गया है।

दूसरे किसी प्रकार का गाच है भवन है।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

बगल मे गुलदस्ता है बगल में चेयर लगाए गए हैं जो ब्लू कलर के है।

ऊपर में ऑपरेशन करने वाली लाइट लगी हुई है।

और ये हटिया जो है बासों का बनाया गया है ऊपर में से तिरपाल दिया गया है।

ये देवघर गेस्ट हाउस है जिसमें से गेस्ट हाउस के बाहर में एक ठो बाइक लगा हुआ है गेस्ट हाउस के अंदर एक कुत्ता है।

यहां पे छे ठो बाइक लगे हुए हैं। बगल में पानी का स्विमिंग पुल है।

बगल मे छलनी रखा गया है रस्सी है ।

एक ठो पीछे में बोर्ड लगा है जिसमे लिखा है द फिटनेस क्लब ।

आर_एफ पतली तार नंगों वाली और छलनी जैसे